हॉल जिस प्रकार में किया गया रहता हैं बुकिंग की जाती है यहाँ पर।

पिंक कलर के पर्दे लगे हुए हैं कुछ फ्लावर दिख रहे हैं लांच जैसा--

ग्राउंड में आए हैं नाइट का समय है कुछ लड़के जेंस फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ पे ब्लू कलर की पूरी साइड स्लाइडिंग लगी हुई है।

प्रकार के लोग आते जाते हैं जिम में सेहत अच्छे रहने के लिए जिम ।

ब्लू कलर के कवर लगे हुए हैं कुछ ग्रीन हैं कुछ वाइट हैं।

इलेक्ट्रिक स्वाप है दो तीन स्वाप है वहाँ पे वर्बल मार्बल आर्ट मैशन--

तालाब में बहुत सारे कुछ-कुछ प्रकार के पेड़ दिख रहे हैं पानी है।

इधर उधर से तालाब में बहुत ज्यादा पानी गहराई है पानी की।

इधर-उधर गार्डन फ्लावर लगे हुए है कुछ पेड़ है बड़े पेड़ है छोटे पेड़ है कुछ रास्ता दिख रहे है इधर-उधर टिन का सेट बना हुआ है।

इधर-उधर फ्लावर लगे हुए है फैन दिख रहे हैं आइट साइड में जगह दिख रही है।